ये वरमाला के स्टेज सजी हुई है एक वरमाला की फोटो है।

जहां पे दो लड़के खड़े हैं और उसके बगल में बैठने की सीटे हैं।